यहाँ एक अ तिरंगे के झंडे का चिन्ह भी बना हुआ है इसके सामने गोलंबर भी बना हुआ है जो काफी सुंदर लग रहा है यहाँ पर बड़ा सारा मकान है जिस पर काफी सुंदर ढंग से सजाया गया है।

जहाँ पर क्रिकेट मैच होता हुआ नजर आ रहा है उसके सामने बहुत सारे दर्शक बैठे हुए नज़र आ रहे हैं ऊपर से त्रिपाल लगे हुए नज़र आ रहे है यहां पर कुछ ट्रॉफी नजर आ रही है।